यह एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है । उसके पीछे एक काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

यह एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है । पहाड़ के साइड में दो तीन लोग खड़े दिख रहे हैं पहाड़ से नीचे |

इसके बाहर काफी सारे लोग आते-जाते और बुक्स खरीदते हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक सैलून है जावेद हवीब का।

तालाब के पीछे साइड में हरी-हरी घास मैदान --